सोफा लकड़ी का सोफा और ये लकड़ी जो है हमें पेड़ो से मिलती है पेड़ों से ही लकड़ी काटकर इन सोफों को तैयार किया जाता है फिर --

एकेडमी हैं यहाँ पर ये पढ़ाई होती है और यहाँ पे सिक्स से ट्वेल्व तक के बच्चों को पढ़ाया जाता हैं यहाँ पे ऊपर बड़ा गेट लगा है जो लोहे का --